घर उर भी है अंदर साइड नर्स उर्स का भी होगा पूरा इंतजाम और देख सकते हैं यहाँ पर दवाई ले रहा है आदमी लोग --

देख सकते हो उधर शायद रहने का भी जगह है मेन गेट भी है यहाँ पे --

पीला कलर का अम्म सीढ़ी पर अअ देख सकते हैं ये किधर साइड देख रहा है उधर साइड नाव नाव भी चल रहा है देख सकते हैं आप लो --

भाई देख सकते हैं यहाँ पर एक गार्डन है उ वाइट कलर का सीमेंटेड --

सन फ्लावर का फूल लगा हुआ है और किसी किसी चीज का फ्लावर लगा हुआ है देख सकते हैं एक लंबा पेड़ है एक छोटा सा पौधा है एक उधर साइड भी है येलो कलर का पेड़ --

बजरंगबली का मूर्ति है सरस्वती माता का मूर्ति है।

देख सकते हैं क्या मस्त लुक आ रहा है पेड़ वेड़ का सन स्काई भी यहां पर क्या मस्त ब्लू ब्लू दिख रहा है।

देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है वार्ड सी उन्नीस से लेकर चौबीस तक यहाँ पर उन्नीस से लेकर चौबीस तक बैट लगा हुआ है यहाँ पर --

यहाँ पर टाइटन की बहोत सारी घड़ियां है बहोत महंगी महंगी घड़ियाँ हों--

भाई देख सकते हैं ये एक डिजिटल सेवा कैफे है शायद यहाँ पररर राज नाम लिखा हुआ है इसका --

खाता बुक का है और पीछे में कोल्ड ड्रिंक कुल्डरिन भी है फ्रिज वरीज लगा हुआ है पूरा --

देख सकते हैं बिस्किट विस्किट भी रखी हुई है यू_पी_आई है।

उं ब्राउन कलर का ऊपर में भी डिजाइनिस कॉरिडोर अंदर में कॉरिडोर भी डिजाइनिंग--

बहुत सारा गद्दा उद्दा रखा हुआ है देख सकते हैं यहाँ दो दो सीढ़ी भी है रेड कलर का है बढ़िया और देख सकते हैं किसी का घर है वोोो --

अअअ यहाँ पर भी है प्लास्टिक का फूल है शायद यह लोग अ क्राफ्टेड क्राफ्टेड फूल है शायद यह सब देख सकते हैं पेपर काटा हुआ है पेंसिल लगा क रखा हुआ है।

ये देख सकते हैं आप एक दुकान है मोबाइल का यहाँ पर शायद प्रिंट प्रिंट भी होता होगा यहाँ पर वो भी है क्या बोलते हैं उ --

ऊपर में टेबल वेबल भी है बहुत सारे एक देख सकते हैं लड़का चाय भी पी रहा है दादा जी हैं चाय बना रहे हैं शायद देख सकते हैं रेड कलर का कपड़ा रखा हुआ है।

सामने में देख सकते हैं एक अंकल जी खड़े हैं हौंडा की बाइक पे देख सकते हैं क्या मस्त लोगो चमक रहा है।

ये बहुत सारा मेंबर का फोटो भी लगाए हैं देख सकते हैं हम मिकी माउस भी है यहां पर एक--

देख सकते हैं यहां पर भी हलवाई वलवाई का दुकान है जलेबी वलेबी होटल वोटल है।

दो तीन होटल हैं यहाँ पर देख सकते हो वो एक दुकान है उसमें जलेबी उलेबी रखा है शायद वहाँ पर भी एक दुकान --

देख सकते हैं यहाँ पर एक बिल्डिंग बना रा है शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी दो तल्ला तक पहुँच गया --

देख सकते हैं यहाँ पर शायद कुछ मीटिंग मीटिंग चल रहा है या फिर कोई आया है अभिनेता वभिनेता --

देख सकते हैं शायद एक इधर उधर भी होंगी व्हाइट कलर का टॉप पे--

एक अंकल जी बैठे हुए हैं साइकल पर एक इधर अपाची लगा हुआ है।

एक ऑटो लगाया हुआ है एक हीरो हौंडा लगा हुआ है देख सकते हैं एक पेड़ भी है रेड रेड पेंट किया गया है।

अ एक नाव में बहोत सारे हैं देख सकते हें कितने सारे कौवे या फिर कुछ उड़ रहे हैं हंस-उंश पानी भी देख सकते कितना मस्त कलर है पानी का भी।